एक बहुत बड़ा मैदान है मैदान मे छोटे-छोटे पौधे उग रहे है छोट इन पौधो का रंग हरा है।

यहाँ एक बहोत बड़ी ईमारत हैं ईमारत का रंग हल्का सा काला हैं और ऑरेंज हैं वही बहोत सारी मुर्तिया बनी हुई हैं।

बहुत बड़ा खेत हैं खेत में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं पौधों का रंग हरा हैं।

सड़क है सड़क के किनारे बहुत सारे दुकाने बनी हुई है दुकानों के अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए है। अलमारी भी रखी हुई है यह दुक--